औरत है और बाइक्स लोग बहुत सारा है।

ये एक हार्डवेयर स्टोर है यहां एक चेयर और टेबल दिखाएं टेबल का ऊपर में एक--

सीजर और पेन लोग है।

बारबर दिखाई पर रा और चार आदमी दिखाई पर रे--

सारे लोग बिछा के दिखाई पा रहे हैं सब दिखाई पा रहे हैं।

खिड़की लोग दिखा पा रहा है ज्यादा से ज्यादा और उसमें कर्टेन लगाते दिखाए पा रहा है एक पाई दिखाए पा रहा है ए_सी का बैकसाइड दिखाए पा रहा है।

यहां हमको एक रेड कलर से बना हुआ ईटा से बना हुआ गेट दिखाई पड़ रहा है।

कार्नर कार्नर में बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई पड़ रहा है और रास्ता दिखाई पड़ रहा है बड़ा से उसमें एक--

रिसेप्शन टेबल दिखाई पड़ रहा है एक ठो उसके ऊपर एक ठो कंप्यूटर दिखाई पड़ रहा है स्कैनर दिखाई पड़ रहा है एक बुक दिखाई पड़ रहा है।

टिशू दिखाई पा रहा है ऊपर में लाइट दिखाई पा रहा हैं फैन दिखाई पा रहा हैं सी_सी_टी_वी कैमरास दिखाई पा रहा हैं।

यह हमको एक रूम में कंप्यूटर मॉनिटर सी_पी_यू एंड प्रिंटर दिखाई पड़ रहा है एक स्विच बॉक्स दिखाई पड़--

फर्स्ट फ्लोर में दो आदमी खड़ा होते हुए दिखाई पड़े और खिड़की दिखाएं पर रहे ब्लू कलर का।

ब्रिज दिखाई पड़ रहा है बैनर लोग दिखाई पड़ रहे है रेलिंग दिखाई पड़ रहा है वाइट एंड रेड कलर का।

सामने में पेड़ पौधा दिखाई पा रहे है।

बोर्ड पर टाइल्स से बना हुआ है दीवार में एक ब्लैकबोर्ड दिखाई पड़ रहा है वहां लिखा है कॉमर्स ।

वहां पेपर से बना हुआ ट्री है और पेपर चिपक के हैं वहां तीन ठो।

वो एक रेस्टोरेंट का अंदर वाला दिखाई पड़ और और कुशन लॉन्ग बेंच दिखाई पड़ रहा है एक टेबल दिखाई पड़ रहा है और चेयर दिखाई पड़ रहा है।

ये स्टोर में हमको मोबाइल फोन्स दिखाई पड़ रहा है और एक आदमी दिखाई पड़ रहा है वहां में।

के ऊपर कपड़ा दिखाई पड़ रहा है सीलन लखीवाल एक स्टैंड दिखाई परे--

दो बकेट दिख पड़ रहे है एक वाइट बैग दिखाई पड़ रहे है स्विच बॉक्स दिखाई पड़ रहे है इलेक्ट्रिक वायर दिखाई पड़ रहा है सी_सी_टी_वी कैमरा दिखाई प--

हमें दिखाई पर रा और बाल्टी दो ठो दिखाई पड़ रहा एक ग्रीन कलर का एक ठो ब्लू कलर --

जो कंप्लीट नहीं हुआ है जो ऊपर में छत पे तिरपाल लगाकर और एक--

आदमी दिखाई पड़ रहा है वहां में जो पीछे तरफ जा रहा है और मिट्टी दिखाई पड़ा है उसमें ग्रास निकलके है और पीछे बड़ा बड़ा पेड़ दिखाई पड़ रहा है बंबूज दिखाई प--

माउंटेन दिखाई पर रा इलेक्ट्रिक पोल दिखाई पड़ रा और वायर दिखाई पड़ रा--

यहां हमको एक हार्डवेयर स्टोर दिखाई पा रहे जो लिखा हुआ है डामिंग हार्डवेयर ।

यहां कोई कोई ब्लू जर्सी पहन के है और रेड जर्सी पहन के है और पीछे बड़ा ट्री दिखाई पड़ रहा है।

पीछे में टायर भी दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां हमको सामने में हार्डवेयर स्टोर दिखाई पड़ रहा है वहां ऊपर में लिखा हुआ है अरुणाचल हार्डवेयर स्टोर ।

यह स्टोर में बड़ा बड़ा बाल्टी दिखाई पड़ रहा है जो कलर बाल्टी है और फेंसिंग रोड दिखा पा रहा है।

सीमेंट से बना हुआ है और पीछे पहाड़ दिखाई पा रहे--

यहां हमको स्कूटी बाइक आदमी दिखाई पड़ रहा हैं यहां एक पोल दिखाई पड़ रहा हैं इलेक्ट्रिक वायर दिखाई पड़ रहा हैं।

काउंटर होगा वहां पर ट्रेवल्स लिख के है।

लैक्टोजन बिस्किट्स है भुजिया है और सामने में बिस्कुट रहे है।

हमको ग्रीन कलर का रूम दिखाई पड़ रहा है और ट्यूबलाइट दिखाई पड़ रहा है और राउंड लाइट दिखाई पड़ रहा है सी_सी_टी_वी कैमरास दिखाई पड़ रहा है और एक के ऊपर में पोट दिखाई पड़ रहा है।

और फोटो फ्रेम दिखाई पड़ रहा है और पीछे वाले रूम में फ्लावर पॉट दिखाई पड़ रहा और रैक दिखाई पड़ रहा है।

ग्लास से बना हुआ है वहां लिखा है क्लोज और पुल और मैं कारपेट बिछाया गया है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का।

लांबा सा रोड दिखाई पड़ रहा है और बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है और ढेर सारा आदमी और गाड़ी कार --

पीछे बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ रहा है रस्ता कॉर्नर में घास लोग दिखाई पड़ रहा है।

यहां हमको एक ऑफिस रूम दिखाएं पड़ रहा और आदमी लोग ढेर सारा दिखाई पड़ रा और उसके हाथ में एक बुक भी दिखाई पड़ रा--

लाइट बल्ब दिखाई पड़ रहा जलते हुए और स्विच बॉक्स दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रिक वायर दिखाई पड़ रहा खिड़की दिखाई पड़ रहा है।

दीवार में व्हाइट कलर का पेंट कर के आगे में साइड पूरा ग्लासेस से बना हुआ है फ्लावर पॉट दिखाई पड़ रहा है जिसमें फ्लावर दिखाई पड़ रहा है।

यह पुराना जमाना में टेंपलो में बनाया जाता था।

यहां हमको एक सैलून दिखाई पड़ रहा है प्रॉपर टॉप फ्लोर पर--

सलों का तोप में एक झंडा भी दिखाई पा रहा है।

यहां हमको डाइनिंग सेटिंग हॉल दिखाएं पा रहा है और एक आदमी का पाव भी दिखाई और ग्लास दिखाई प--

इन सुनीता इसर वॉटर बॉटल वेंटिलेशन रेड काउंटर टॉप वॉल में एक पेंटिंग चिपका के है।